और इस नदी के अगल-बगल कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और इस नदी में कई सारे लोग नहाने भी आते हैं।

ये एक ये एक मेले का चित्र दिखाई दे रहा है और इस मेले में कई प्रकार के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं।

ये एक खेत का चित्र दिखाई दे रहा है पर इस खेत के मेढ़ पे कई सारे हरी-हरी घास वगैरह लगी हुई है।

और इस घर में कई सारे मिस्री भी आ रहे आ गए हैं ये मिस्री कुछ दीवाल वगैरह भी बना रहे हैं।

उसके पिसया वाले खेत पे एक बड़ा सा टावर भी लगा हुआ है।